और इसमें कुछ मोटे मोटे पत्थर भी पड़े हैं।

और उसके पीछे एक आदमी भी खड़ा है।

और एक कैनी भी रखी है कुछ साइकिल भी खड़ी हुई है।

ऊपर एक हरे कलर कि चादर है।

ये एक बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है।

और इनमें बहुत सारी लाइट भी लगी है।

इसमें बहोत सारे बच्चे पी_टी कर रहे है।

और उनके चेहरे छुपे हुए हैं।

इसपे लिखा है स्टेट बैंक ए_टी_एम और इसमें एक शीशे का गेट भी लगा है।

जिसके ऊपर टीन की चादर पड़ी है और नीचे बहुत सारे टब रखे हैं।

और सब्जियां और भी बर्तन रखे हैं।

और कुछ लाइट भी लगी हुई है।

इसके हाथ में एक बड़ी सी मशीन है।

और उसके पास हथौड़ी भी रखी है एक बसूली भी रखी है।

ये एक हेयर सैलून है। इसमें एक कुर्सी पे एक आदमी बैठा है।

मेज के नीचे कुछ स्टूल भी रखे हैं।

और जग भी रखा है बाहर कुछ कुरकुरे भी टंगे हुए हैं।

यहां एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा छुपा है।

ये एक कपड़ों की दुकान है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है।

और उसके टायर निकले पड़े हैं।